ये एक मस्जिद है और ये मस्जिद बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाई गई है।

ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग मालूम होती है और इसमें कलर जो करा रखा है।

और ये बहुत ही साफ़ सुथरी शॉप भी है उसके ऊपर होअर्डिंग बड़ी अच्छी लगाई गई है और इसके बाहर के दरवाजे शीशे के बने हुए हैं।

ये एक बहुत ही सही फोटो है जहाँ एक ठेले पर केले और पपीता और खर।

ये एक बोहत ही खूबसूरत फोटो लिया गया है। ये फोटो में हमें दिखलाया जा रहा है।